और इसमे बोहोत सारे यंत्र पड़े हैं।

सब के सामने बहुत सारे पुरुस खड़े हो कर ढोल बाजा रहे हैं।

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि इस में एक कमान सा बना हुआ है। उस --

देखिए स् सामने बोहोत सारे पॉड पेड़ पौधे झाड़ घास दिख रही हैं।

लोगों की जांच की जा रही है।

और बोहोत सारी मिट्टी पड़ी हुई है। मी --

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि यह बहोत सारे झाड़ दिखाई पड़ रहे है और --

यह श्री बजरंग होटल नंबर दिया गया है।

इस चित्र मे हम देख पा रहे हैं कि यह बच्चे का बड़ा सा पुतला बना हुआ है।

एक आदमी चल कर जा रहा है और एक आदमी गले में रुमाल डाल कर अपनी तस्वीर ले रहा है।